--दिख रही है और सीडी भी लगी हुई है ए_टी_एम कार्ड भी बना हुआ है बगल से दीवार भी दिख रही है।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

यहाँ पर मुझे बैंक दिखाई दे रही है भारतीय स्टेट ग्राहक सेवा केंद्र बैंक लोक सेवा केंद्र यहा पर बोहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है कुछ औरते भी दिखाई दे रही है।

हमें यहाँ पर कुछ लड़कियाँ दिखाई दे रही है जो बोहोत ही सुन्दर है और कतकली नाम का एक डांस कर रही है हाथ में मेहन्दी लगाई हुए है हाथो में चूड़ी लगाए हुए--

साथ सिल्डे टेबल पर रखी हुई हैं और मेडल भी साथ रखे हुए हैं और एक बैनर भी लगा हुआ हैं।